इस तस्वीर में मुझे एक हॉल नजर आ रहा है जहां पे केसरिया सफेद और--

छवि नजर आ रही है जहां पे थोड़ा पानी भरा है और आस पास बहुत सारी घास लगी--

यहां पे मुझे रबर लिपस्टिक बिंदी सिंदूर है सब कुछ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है जिसका पिल्लर है ग्रे कलर का है यहां पे मुझे एक बाइक --

पे कुछ पानी भी गिरा हुआ है और रेड कलर के पिलर्स भी मुझे गाड़ियों के साथ नजर आ--

शॉप के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए है।

इसके साइड में कुछ गमले रखे गए है और उनमें पौधे लगाए --

द्वार पे ऑरेंज कलर किया गया है और दरवाजा खुला रखा गया है।

ये आस पास मुझे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं और यहां पे एक लोहे का खंभा भी दिखाई दे रहा--

एक गा अ गाड़ी दिख रही है जिसमें तोप बनी हुई है ये ग्रीन कलर की है यहां पे मुझे घर का मलिक है।